इस इमेज में एक गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे गेट के ऊपर एक लाईट जग रही है।

ये इमेज रात के समय ली गयी है यहाँ पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर काफी पेड़ नजर आ रही है और यहाँ पर ईंटो से बनी हुई दीवार दिखाई दे रही है ।

इस इमेज में काफी जमीन नज़र आ रही है यहाँ पर जमीन के ऊपर घास उगी हुई है।

इस इमेज में बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग में बहुत सारे शीशा लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर खिड़किया नजर आ रहे हैं।